तीन चार आदमी भी बाइक पर बैठे हुए हैं कुछ बाइक चल रही है।

इस तस्वीर में एक घर दिख रहा है जिस घर में--

कुछ हरी पत्तियां भी इसमें दिख रही है।

इस तस्वीर में एक रेलवे पेट्रोल --

इस तस्वीर में एक घर दिख रहा है जिस घर में--

मार रही है अगल-बगल लाइट भी लगे हुए है।

रोड की अगल-बगल में पेड़-पौधे लगे हुए--

एक आदमी है जो बैठा हुआ है।

एक बांस दिख रहा है जो देवाल पर अरका हुआ है एक --

घास देख रहे हैं जो जमीन पर है।

एक चित्र है जिस चित्र में एक--

नीचे जमीन है जो--

जमीन पर घासपुस--

कपड़ा के दोकाने लगाए हैं कुछ पुतले हैं जो कपड़े उसे पहनाए है।

दुकान के ऊपर भी एक घर है जिसमें--

चीन देखने के एमएम हॉस्पिटल नाम का--

इस तस्वीर में एक घर है जिस घर में एक--

ढेर सारी सामान सड़ी आए गए हैं कुछ टेबल कुर्सी भी है।

पोस्टर लगे हुए हैं और बगल में एक पोस्टर लगे हुए हैं अगल-बगल घर है।

इस तस्वीर में एक घर है जिस घर में एक--

ऊपर से एक डिजाइन बनाए हुए हैं जो--

एक है घर है जिस घर में--

कुछ सामान देवाल पर भी--

एक बाल्टी है जो ग्रीन कलर और वाइट कलर का है सामने एक दीवार है जो वाइट कलर का है एक --

और तीन-चार आदमीये भी हैं इसमें और अगल-बगल--

दुकान है बीच में एक रोड है इसमें गाड़ी तो लगा हुआ है।

तीन-चार कुर्सी भी लगे हुए हैं उस पर अगल-बगल एक छात्रीय सा लगा हुआ है बीच में एक--

पानी दिख रहा है जो पानी का लहर है एक सामान है जो --

एक हरी भरी घास भी भरे हुए है।

इस तस्वीर में एक गीतार दिख रहा है जो टंगे हुए हैं अगल-बगल--

सामने तीन-चार घर हैं जो बड़े-बड़े बिल्डिंग हैं कुछ नीचे सामान भी है।

कुछ बाइक लगे हुए हैं भी सामने एक और घर है ऊपर आसमान है अगल-बगल सामान है।

सामान रखे हुए हैं एक लड़का है जो जिम कर रहा है ऊपर कुछ लिखा हुआ है।

इस तस्वीर में एक घर है जिस घर में--

फूल के बागान दिख रहे हैं जो--

ढेर सारे पीले पीले फूल खिले हुए है।

पूरा आदमी और औरत बैठे हुए हैं अगल-बगल घास भी जमे हुए हैं जो हरा भरे भरे ऊपर आसमान है।

इस तस्वीर में एक घर है जिस घर में--

लंबा सड़क दिख रहा है जिसके अगल-बगल चारों तरफ--

हरे भरे घास है और सामने एक पहाड़ है ऊपर आसमान है।

एक मिट्टी भी है जो ब्राउन कलर का है।

बेड भी ढेर से लगाए हैं जिसमें बिछोने बिछाए गए हैं एक आदमी है जो बेड पर बैठा हुआ है।

एक पत्थर है जिस पर आदमी बैठा हुआ है पीछे भी ढेर सारे पत्थर है।

इस तस्वीर में बड़ा सा एक--

इस तस्वीर में एक घर दिखा जिस घर में--

और गाड़ी का कलर वाइट और ग्रे कलर का है।

ऊपर में भी घर है जिसमें ढेर सारे सामान रखे गए--

पर पौधे हैं ऊपर आसमान है एक पूल है जो लंबा सा है।

इस तस्वीर में एक घर है जिस घर में--

अगल-बगल पेड़-पौधे भी हैं अगल-बगल घर भी है।

इस तस्वीर में एक घर है।

जिसमें एक टीवी लगा हुआ है दो-तीन कुर्सियां हैं ऊपर में बॉल बन रहे हैं कुछ एक बोर्ड है जो ब्राउन कलर का बोर्ड है।